एवं नगर पालिका परिषद् के रूप से जाना जाता हैं।

रंगहीन है। पेड़-पौधे हरे-भरे पूरे दिख --

फेविकोल से कार्ड चिपकाते हैं। सीज़र्स से काटते है और अनेक प्रकार की चीजें को बनाते हैं और फिगर बना के चिप --

और पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं। यहाँ घर बहोत ही अच्छी तरह से हैं।